बता रहे हैं कुछ यहां पे आग बुझाने वाले एक मशीन भी पड़ी हुई है और यहां से--

पीने के लिए खाने के लिए चीजें मिल रही हैं और यहां पे टेबल भी पड़े हुए हैं यहां पे लोग फिर रहे हैं ।

खाएंगे तो पता चलेगा कैसा है और इस पे चॉकलेट्स लगी हुई हैजो--

दूसरी साइड पे लेटने के लिए एक बेड पड़ा हुआ है आगे एक मैट पड़ा हुआ है जिस पर पांव साफ करके अंदर जाते हैं ।

और ये एक गुजरने का रास्ता है जो सामने नजर आ रहा है और ऐ _सी लगे हुए हैं यहां पे--

लोग ट्रेन में चढ़ के बैठे हुए हैं ट्रेन आई थिंक चलने लगी है ।

लोग यहां पर फिर रहे हैं और किले की एक अदत खिरकी --

यहां पे लोहे की कुछ चीजें बन रही हैं लोहे लोहा इर्दगिर्द परा हुआ --

ये एक विंटर लैंड है जहां पे उन्होंने शेर भी रखे हुए हैं और ऊपर तस्वीर पे शेर बना भी हुआ है ।

वंडरलैंड में आते हैं और यहाँ दरख्त ही दरख्त हैं है और गुलदान ही गुल्दान पड़े हुए हैं ।

पीछे एक जंगल है जंगल में दरख्त ही दरख्त है हरियाली ही हरियाली है।

ये एक चर्च है जहां पर ईसाई अपनी इबादत करते हैं और वहां उनका जशन चल रहा है।

यहां पर कोई फंक्शन होने वाला है और साइड पर लाइटे लगाकर रोशनी का भी इंतजाम किया हुआ है।

और सबने अपने अपार्टमेंट पे ए_सी भी लगवाया और फुटपाथ पे खड़े होके दिवाली माना रहें हैं ।

यहां पे दुकानें बनी हुई हैजो कि बंद है और पिलर्स लगे हुए हैं।

यहां एक वैन खड़ी है जिसमें कि एक शॉप पर वैन बंद है और उसके शीशे भी बंद है और--

जो कि टाइम बता रही है और लोग यहां पे चेक करवाने आ रहे हैं ये--

अ बाएं तीन गाड़ियां नजर आ रही है जिसमें से एक रेड है एक ग्रे है और एक ग्रेइश ब्लैक और ट्रक लगे हुए हैं।